यह एक कॉलेज का भवन है जोकि बोहोत सुंदर दिख रहा है।

जौन की गांव के बाहर स्थित --

ई एक स्कूल के दृश्य बाटे जवन कि बहुत ही स्वभयमान बाटे। स्कूल के नाम बाटे अकादमिक ग्लोबल स्कूल ।